कितना नीक लागता पूरा लाल रंग के पर्दा पीछे लागल बा व्हाइट कलर का पर्दा वि पूरा अ माला फूल से सजावल गइल बा कित्ता बढ़िया स्टेज लगता सुन्दर एकदम --